कुछ गाड़ियां है जो बैठी है जो खड़ी है एक मूर्ति--

सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव--

आसमान हैं उसमें बादल हैं ठंडा हैं।

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा--